और एक ब्राउन कलर का टाइल्स है एक वो जो व्हाइट कलर का टाइल्स है सामने एक खिड़की भी लगी --